git की बुनियादी कमांड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: git repository और git की कुछ बुनियादी commands
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ: उबन्टु लिनक्स 1404 git 232 और gedit text editor
आप अपनी पसंद का कोई भी editor उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको terminal पर रन होने वाली लिनक्स commands की जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित लिनक्स tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
अब हम देखेंगे कि git repository क्या है
git repository एक folder है जहाँ हमारे project का सारा data संचित किया जायेगा
यह local machine या remote machine पर स्थित किया जा सकता है
सामान्य folder और git repository के बीच अंतर निम्न प्रकार है:
सामान्य folder केवल files और directories रखता है
लेकिन git repository उनकी पूरी history के साथ files और directories का set रखता है
अब अपनी local machine में git repository बनाना सीखते हैं
ctrl + alt + t keys दबाकर terminal खोलें
मेरी machine पर मैं अपनी home directory में git repository के लिए एक directory बनाऊंगी
आप अपनी machine पर जहाँ भी चाहें वो directory बना सकते हैं
default रूप से home अपनी home directory में हैं
type करें: mkdir space mywebpage और enter दबाएँ
हमने अपनी home directory में mywebpage directory बना ली है
इस directory में जाने के लिए type करें: cd space mywebpage और enter दबाएँ
mywebpage directory को git repository की तरह बनाने के लिए type करें: git space init और enter दबाएँ
आप initialized empty git repository message देख सकते हैं
यह दर्शाता है कि git सफलतापूर्वक इनिशियलाइज़ हो गया है
और यह वो path है हमारे system में जहाँ git repository बनाई git है
इनिशियलाइज़ेशन के बाद छुपा हुआ folder dot git mywebpage folder के अंदर बनेगा
छुपे हुए folder को देखने के लिए type करें: ls space hyphen a और enter दबाएँ
यह उस dot git folder को दिखाता है इस dot git folder को डिलीट करना पूरे repository को डिलीट कर देगा
आपको इस dot git के साथ बहुत सावधानीपूर्वक काम करना है
अब हमें git में अपनी आइडेंटिटी पहचान set करनी है
email address set करने के लिए type करें: git space config space hyphen hyphen global space user dot email space priya dot spoken @gmail com और enter दबाएँ
यहाँ मैंने priya dot spoken at gmail dot com उपयोग किया है
आप अपना valid प्रमाणिक email address उपयोग कर सकते हैं
यूज़रनेम set करने के लिए type करें: git space config space hyphen hyphen global space user dot name space priya और enter दबाएँ
मैंने यूज़रनेम में priya दिया है कृपया priya की जगह अपना name दें
name और email address जो हम set करते हैं who उस व्यक्ति की आईडेंटिटीज़ होती हैं जो git पर कार्य कर रहा है
आगे commit message देने के लिए मैं gedit text editor configure करुँगी
type करें: git space config space hyphen hyphen global space core dot editor space gedit और enter दबाएँ
अब gedit git पर कॉन्फ़िगर हो गया है
यहाँ global flag वैकल्पिक है
global flag के बारे में अधिक जानने के लिए हम अपनी slides पर वापस जायेंगे
एक ही machine में multiple रेपॉज़िटरीज़ यानि विविध संग्राहक बनाए जा सकते हैं
यदि आप hyphen hyphen global flag उपयोग करते हैं तो machine में सारी रिपॉज़िटरीज़ यानि संग्राहक पर setting लागू की जाएगी
अतः जब भी आप एक नयी git repository बनाते हैं तो default रूप से यह setting लागू की जाएगी
यदि आप केवल एक विशेष रिपॉज़िटरी के लिए आइडेंटिटी चाहते हैं तो hyphen hyphen global flag उपयोग न करें
terminal पर वापस जाएँ
अब उस आइडेंटिटी के कॉन्फ़िगरेशन का विवरण जाँचते हैं जो हमने पहले set किया
type करें: git space config space hyphen hyphen list और enter दबाएँ
अब आप editor का name email address और यूज़रनेम देख सकते हैं
मैं प्रदर्शन के लिए html files उपयोग करुँगी
आप अपनी पसंद की कोई भी file type उपयोग कर सकते हैं उदाहरणस्वरूप: text files या doc files
terminal पर वापस जाएँ मैं prompt clear करती हूँ
अब type करें: gedit space mypage html space ampersand
यदि आप एक अन्य file उपयोग कर रहे हैं तो mypage html के बजाए उस file का नाम दें
हम prompt को खाली करने के लिए & ampersand उपयोग करते हैं enter दबाएँ
मैं अपने writer document से कुछ code जो मैंने पहले ही सेव किया था इस फाइल में copy और paste करुँगी
इसीप्रकार अपनी file में कुछ विषय वस्तु कंटेंट जोड़ते हैं
अब मैं फाइल सेव करुँगी
अतः मेरे पास इसमें कुछ code के साथ एक html file है
note: जहाँ भी मैं mypage html उपयोग करती हूँ आपको अपने फाइल के नाम से इसे बदलना होगा
आगे हम git से mypage html फाइल का अनुसरण करने को कहेंगे
terminal पर वापस जाएँ और type करें: git space add space mypage html और enter दबाएँ
अब हम git की वर्तमान status जांचेंगे type करें: git space status और enter दबाएँ
आप new file: mypage html देख सकते हैं इसका मतलब है git ने इस mypage html file में किये git बदलावों का अनुसरण करना शुरू कर दिया है
इसे tracking कहते हैं
अब अपनी file mypage html पर वापस जाते हैं
और इस file में code की कुछ ज़्यादा लाइनें जोड़ते हैं
पहले की तरह मैं अपनी writer फाइल से copypaste करुँगी
file को सेव और बंद करें
फिर terminal पर जाएँ पहले की तरह git का वर्तमान status जाँचते हैं type करें: git space status और enter दबाएँ
यह दिखाता है: changes not staged for commit: और modified: mypage html
इसका मतलब है जो बदलाव हमने किये वो staging area में नहीं जोड़े गए हैं
अब staging area के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपनी slides पर वापस जाते हैं
staging area एक file है जो उन बदलावों की जानकारी को संचित करता है जिन्हे कमिट किये जाने की ज़रुरत है
file की विषय वस्तु को उनके कमिट होने से पहले staging area में जोड़ा जाना चाहिए
हम commit के बारे में अधिक चर्चा आगे आने वाले tutorials में करेंगे
पुराने git संस्करणों में staging area के बजाय term index का उपयोग हुआ है
add देखते हैं कि staging area में उस file के now बदलावों को कैसे जोड़ते हैं
terminal पर वापस जाएँ मैं prompt clear करती हूँ
type करें: git space add space mypage dot html और enter दबाएँ
git status जाँचने के लिए type करें: git space status और enter दबाएँ
अब आप message देख सकते हैं changes to be committed:
इसका मतलब है कि file staging area में जुड़ गयी है और कमिट प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार है
अब इस point पर हम अपने code को freeze करते हैं
जब हम अपने काम में एक विशेष स्थिति पर पहुँचते हैं तो हम उन्हें repository में सेव करते हैं यह commit कहलाता है
प्रत्येक commit निम्न की जानकारी के साथ सेव होता है username emailid date time और commit message
अब देखते हैं कि commit कैसे करते हैं terminal पर जाएँ और type करें: git space commit और enter दबाएँ
commit message प्राप्त करने के लिए gedit text editor अपने आप खुलता है
पहली line में commit message की तरह मैं type करुँगी: initial commit
आप कोई भी सूचनात्मक message जो आप चाहते हैं type कर सकते हैं
यहाँ आप hash से शुरू होने वाली कुछ लाइनें देख सकते हैं आप उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं या उन्हें मिटा सकते हैं
कृपया hash line से पहले या बाद में commit message लिखें
भविष्य में इस commit message के साथ हम पता लगा सकते हैं कि इस stage तक हमने क्या किया
अब मैं editor को सेव और बंद करती हूँ
आप निम्न की तरह कुछ विवरण देख सकते हैं: commit message हमने कितनी फाइलें बदली हैं हमने कितनी प्रविष्टियाँ की हैं और फाइल का नाम
अब git log command प्रयोग करके हम commit विवरणों को देखते हैं
type करें: git space log और enter दबाएँ
हमारी रिपॉज़िटरी में केवल एक commit है
यह एक अद्वितीय id दिखाता है जिसे commit hash या sha1 hash कहते हैं
sha1 hash के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपनी slides पर वापस जाते हैं
sha1 hash 40 alphanumeric characters की एक अद्वितीय आईडी है
git hash value से इसके database में सारी जानकारी संचित करता है
git commits sha1 hash से पहचाने जाते हैं
sha1 hash के महत्व को आप भविष्य के tutorials में समझेंगे
अब अपने terminal पर वापस आते हैं
यह commit के विवरणों को दिखाता है जैसे author name email address date time और commit message जो हमने पहले दिया
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं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
एक नियत कार्य मेंअपनी machine पर एक directory का निर्माण करें और इसे repository की तरह बनाएं
एक text file बनाएँ और इस पर कुछ विषय वस्तु डालें
git repository के staging area पर file जोड़ें
अपनी repository में file commit करें और
git log command प्रयोग करके commit विवरण देखें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और online tests pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें